जिसकी दीवार सफेद और भूरे रंग की दिख रही है एक बच्चे दिख रहे है एक बालक बैठा दिखाई दे रहा है और दो व्यक्ति खड़े दिख रहे हैं।

जिसमे की हमें एक कमरे के अंदर दिखाई दे रहा है जिसकी दीवालें हरे रंग की है और एक महिला और एक पुरुष बैठे हुए हैं ।